ये पिक्चर बहुत - बहुत सुन्दर लगता है कटिंग का शॉप हैं कटिंग करते है हेयर का है शॉप

ये पिक्चर जो है शादी जैसे दिखता हैं। एक औरत हैं --

शादी चल रही हैं डेकोरेशन अच्छा हैं सुपर हैंअच्छा दिखता हैं।

बोर्ड दिख रहा है झाड़ा दिख रहा हैं बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं रोड दिख रहे हैं लाइट ऑन दिख रहे हैं।

पिक्चर बहुत सुन्दर लग रहा हैं हैं बच्चें हैं औरता हैं फोटो दिख रहा हैं छाना दिख रहा हैं बड़े बड़े पत्थरे दिख रहे हैं दिख रहा हैं बहुत सुन्दर दिख रहा हैं।

टीवी दिख रहे हैं शॉप के जैसा दिख रहा हैं बहुत - बहुत सुन्दर लगा रहा हैं लाइट ऑन दिख रहे हैं डिज़ाइन दिख रहे हैं।

पिक्चर बहुत - बहुत सुन्दर लग रहा हैं देख ने चर्च को दिख रहा हैं सो औरता हैं रजवाने हैं मित्र हैं दरवाजे दिख रहे हैं गाने दिख रहा हैं रोड दिख रहा हैं बहुत बहुत सुन्दर दिख रहा हैं।